इसमें पिंजरा है इसमें एक शेर दिख रहा है मेज पर बैठा है जाली लगी हुई है एक डंडा है।

इसमें बहुत सारे जंगले दिख रहे हैं अनेक अनेक तरह की साइकिलें दिख रही हैं इसलिए बड़ी दुकान है इसमें लाइट भी दिख रही है।

एक गाड़ी दिख रही है आसमान दिख रहा है तार दिख रहे हैं टंकी दिख रही है पानी की एक सड़क दिख रही है।

टॉफीयों का डब्बा है और बल्ब भी जल रहे हैं ये बड़ी दुकान है।

ऊपर लाइट है सफेद लाइट जग रही है उसमें एक फैन लगा हुआ है अशिष्ट फैन है उसमें एक ए_सी है।

पास और ऊपर एक हॉल है ऊपर दुकाने है आगे गाड़ी खड़ी है शटर बंद है इधर का साइड वाली दुकान खुली है मोटरसाइकल --

एक हाथी है और नीचे आस पास पानी चल रहा है हाथी बना हुआ है आस पास लोग बहुत सारे खेल रहे हैं।

एक टॉवर दिख रहा है एक बड़ी बिल्डिंग दिख रही है आस पास जगह खाली पड़ी है ये दो तीन बहुत सारी बसें खड़ी हैं।

लाइटिंग भी है देख की दुकान है इसके अंदर बहुत सारी थैली हुई है बड़ी दुकान है लाइट जग रही है।

यह एक फोर जी मोबाइल की दुकान है बाहर फोर जी लिखा हुआ है दुकान खुली है अंदर लाइटें जल रही है।

ईधर इसके अंदर एक जूसिंग मशीन है जिसके अंदर पड़ा है अंदर फैन लगा हुआ है लाइटें लग रही --

ये आम लैबोरेटरी लेब है इसके बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है इसका गेट --

यह एक बहुत बड़ा गार्डन है इसके अंदर फुल बहुत से हैं पीले रंग के फूल हैं रेड कलर के फूल हैं आसपास बहुत हरियाली है इसमें।

और बहोत सारे लोग नहा रहे हैं यहां पे और बहुत सारा लोग खेल कूद मजा भी कर रहे हैं और आसमान नीला हो रखा है।

और बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाया हुआ है जिसके अंदर बुक्स भी हैं और तीन लोग के बाहर--

यहां बहुत सारे मालाएं लटकाई हुईं है जो की है।

यहां पर एक शॉप है जिसके अंदर ढेर सारी लाइटें जग रही है भी है।

और चार है कुर्सियां पड़ी है और दो आदमी इसके अंदर काम कर रहे हैं एक लगा हुआ है और एक बोर्ड है।

यह एक सरकारी जगह है जिसके अंदर ये चार बन्दे काम कर रहे है और एक बीच मे टेबल पड़ा है और आस पास लोग घूम रहे --

इसी जगह और उसे एक--

और बहुत से कार्य के लिए डॉगी है।